यह एक बुक का दूकान है। बुक की दूकान के अंदर खटाल लगा है। बहुत सारी किताब है बोहत सारे फोटो कॉफी करने का मशीन हैं। ठंडा रखने वाला फ्रिज ।

टेक्टर के ऊपर से साईलेंसर निकला हुआ हैं। कल्ठी भी बहुत मस्तउसके साईड मे गाछी वृक्ष भी हरे भरे हुए हैं। देखने मे बोहत बढ़िया लगता हैं। गा-खेतमे घेरा हुआ है।

ये देखिये किसी जेनरल स्टोर लगता हैं। यहां पे कलम हैं कॉपी है। मतलब सब कु साबुन है सरफ हैं। पेंसम हैं। डेटोल सब रखा हुआ हैं। पॉलिसम है खटाल भी बहुत सुंदर देखने में लगता हैं।

यह देखे किसी ऑफिस का उद्घाटन है जिसमे बलून सब सजाए हुए है माला से सजाए हुए है किसान संघ का फोटो सब मतलब बहुत बढ़िया लगाए हुए है।

यह देखिये छठ पूजा का तस्वीर है नदी में किया है छठ जों आंटी सब दू के थ्रू है नदी में बहुत बड़िया लागत हे पौखर है नदी नहीं बड़का जन के टूर है।

आदमी लेकिन मोबाइल आगे ऐसे करके रखे हुए हैं । जिसमे स्टाइलिश फोटो खींचा रहे हैं । जिम क्लब के सामान सब है । सिरिस में घोल घोल के लटक पुटक्के जेई --

ऐसे करके बोल्डर्स की तरह जैसे फोटो खिचायें हुए है। व्हाईट जूता पहने है। बंडी पहने है। टोपी वाला टाइगर श्रॉफ की तरह स्टाइल लेकिन है नहीं उसके पासन में भी नहीं है। यह देखिये देखने में बढ़िया--

ये किसी शेक हब है। जिसमें शेक हब ऐ। जूस का कॉर्नर हैं।